कोई प्रोजेक्ट भी है जहा पे आधे घर बने हुए हैं आधा बनना बाकी है और देखिये एक--

ट्रक जा रहा है जिसपे सामान लदे भी हो सकते हैं इधर देखिये छोटी-छोटी झुगी-झोपड़ियाँ भी हैं जहाँ पर लोग --

ये कोई विद्यालय का द्वार है जो बाहर से जाने वाला रास्ता अंदर से देखिये बहुत बड़ा कॉलेज भी दिख रहा है।

यह वाइट कलर का बंगलो है जो दिखे टू मंजिलें है सामने से देखे फैंसी भी है और देखिये इसमें दो बड़े-बड़े प्लांट भी है।